और उनके हाँथ में चाय का कप दिखाई दे रहा है।

आसपास कई पेड़ यहाँ पर दिख रहे--

और एक टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर खाने के कई सामान दिखाई दे रहे है। नी--

आसपास बहुत से पौधे भी यहाँ दिखाई दे रहे हैऔर उनमे सफ़ेद और लाल रंग के फूल है।

पीछे की ओर अ एक डेकोरेशन सा किया करा हुआ है।

कुछ चप्पलें यहाँ पर रखी हुई है। एक--

और यहाँ पे कुछ लोगो खड़े हुए है।

और सामने की ओर एक घर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक कईं तार यहाँ पर लगे हुए हैं।

और एक कुर्सी रखी है जो की काले रंग की है।

यहाँ पास रोड पर खड़ी हुई है ।

जिसमे की हरी-हरी घाँसे और कई--

यहाँ एक काउंटर है जहाँ पे जमुनी कलर का पर्दा लगाया गया है।

छोटे-छोटे बच्चो के यहाँ पे कपडे दिखाई दे रहे है।